हाय एवरीवन ये एक फुवारा है ये फुवारे में --

हेल्लो एवरीवन ये एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी तस्वीर है।

ये जो तस्वीर है ये एक चिड़िया घर की तस्वीर है।

की गाड़ी है ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं।